और इसमें बहोत सारे लाइट्स लगी हुई है इसके फर्श में टाइल्स भी लगा हुआ है।

और बाहर में एक टोटो लगा हुआ है और उस टोटो के एक आदमी पकड़ के रखा हुआ है वह सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसमें बहुत सारी रेंक बने हुए हैं रेक पे बहुत सारी कॉपी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक मकान है जो मंदिर जैसा बना हुआ है और यहां चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसका डेकोरेशन फूल एवं बैलून से किया गया है।

यह फोटो एक जंगल का है जिसमें बहुत सारे पेड़ एवं पौधे हैं।

इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है इसके चारों तरफ बहोत सारे पेड़ हैं एवं बिजली का खंभा है।

एक मकान का प्लास्टरा नही हुआ है एक मकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में बहुत सारे पेड़ है।

दो फोर व्हीलर का कलर एक ही है और एक फोर व्हीलर का कलर ब्लू है।

कोने में एक कैमरा भी है।

और इसकी सीलिंग में बहोत सारे लाइट्स हैं और पंखा भी--